फोर लिखा हुआ है और ऊपर की दीवाल व्हाइट कलर की दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। दरवाजा है जो कि खुला हुआ क्रीम कलर का दरवाजा पर्दा दिखाई दे रहा है। पाइप नजर आ रहा है। साइड में एक और रूम है।

बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके साइड में एक पुराना कुछ घर टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ दरवज्जे और कुछ खिरकियाँ दिखाई दे रहीं हैं। उ --

साइड में एक पुराना रिक्शा भी खड़ा हुआ है पीछे आसमान दिखाई दे रहा है। पर्दे से सटा हुआ है। मधुरिया ई रिक्शा ई स्कूटी का पोस्टर नीचे दिखाई दे रहा है। रोड दिखाई दे रही है। कचरा दिखाई दे रहा।

पूरा घर टाइप दिखयी दे रहा है और यह व्हाइट कलर का खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैंरेड कलर की पट्टियाँ दिखाई दे रहीं हैं सामने की ओर कार दिखाई दे रही है।

और उसकी शटर बंद है। सामने रोड दिखाई दे रही है। स्कूटी दिखाई दे रही है। सीढ़ी दिखाई दे रही है। लोहे की वर्क्शाप नीचे दिखाई दे रहा है। शटर दिखाई दे रहा है। बंद शटर --

उस साइड के खुदी हुई दिखाई दीपीछे घर दिखाई रहे हैंब्लैक कलर के मंदिर दिखाई दे रहे हैं।